ये शॉप कार मैकेनिक की है जिसमे कार मैकेनिक किसी गाड़ी को सुधारता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ी का एक टायर भी निकला हुआ रखा है।

एक नाव उलटी पड़ी हुई है और एक नाव के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और मैन प्लेयर --

ये सब एक बुक स्टेशनरी है। जिसमे एक आदमी अम दुकान दार खड़ा हुआ है। अपनी कस्टमरो का इंतज़ार कर रहा है।

काफी अच्छी गैलरी इसमें लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं।

प्रसिद्द फेस्टिवल रक्षाबंधन की है। इस दुकान में दिख रही हैं बहोत सारी राखियाँ। रंग-बिरंगी बहोत ही खूबसूरत राखियाँ हैं।